मस्जिद की दीवारों में खिड़कियां लगी हुई हैं।

बाइक से आगे एक व्यक्ति साइकिल पर है और उससे आगे एक व्यक्ति पैदल चल रहा है।

यह तस्वीर एक कारखाने की है जिसमें एक मजदूर आग जला रहा है।

यह दुकान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की है।

रसोई में बहुत सी औरतें और पुरुष काम कर रहे हैं।

यह दुकान एक फास्ट फूड की है।

इस दुकान के बाहर काउंटर रखा हुआ है।

बिछे हुए मैट छह है जिनमे से--

मैदान के नीचे से पानी जा रहा है।

और मैदान में सूखे पेड़ खड़े हुए हैं और फूल के पौधे भी हैं।

यह तस्वीर एक परचून की दुकान की है। दुकान के अंदर खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

दुकान के दराज में काफी रिजस रजिस्टर रखे हुए हैं।

पीछे तीन चार पेड़ लगे हुए हैं जो हरे पत्तों से लदे हैं।